एल_ई_डी लगी हुई है दीवार पर।

और यहां ले लेफ्ट साइड में एक बेड --

और नीचे तीन विंडो और एक गेट लगा हुआ है।

उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ है।

इनके लेफ्ट साइड में एक दीवार खड़ी हुई है।

एक पेड़ घर के पीछे भी लगा हुआ है।

और वहां पर एक सोलर पैनल भी रखी हुई है।

तीन कुर्सी रखी हुई है।

नीचे वाइट कलर की टाइल लगी हुई है।

व्हाइट कलर का मैट बिछा हुआ है।

बहुत सारे ढोल सामने रखे हुए हैं।

यहां पर प्लास्टिक की सामानें मिलती हैं।

पीले कलर के कट्टे वहां पर सामने रखे हुए हैं।

और बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं।

जिसने मास्क पहना हुआ है।

यहां सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं।

आमने भी बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है।

और ऊपर एक पुल टाइप बना हुआ है।

यहां सामने एक मशीन रखी हुई है।

और उसके पीछे ब्लैक ब्लैक है।

पहर पैड़ियो पर रेड कलर हुआ है।

लेफ्ट साइड में ये बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

और मोटरसाइकल के राइट साइड में एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

कुछ मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई है।

यहां व्हाइट पुट्टी में स्वागतम लिखा हुआ है।